जोकि खड़ा होकर देख रहे है साइड में दिखाई दे रहा है जोकि आम का पेड़ है और बहुत हरा-भरा दिखाई दे रहा है।